टेबल पर एक गमछा बिछाया हुआ है रेड और वाइट कलर चेक का।

उधर पुल पर हम देख पा रहे हैं एक ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है जो की ब्लू कलर का है।

यह एक रोड के किनारे का फोटो है।

एक रोड है र रोड के साइड में जो की आपको यहाँ पहले दिख जा रहा अल्लाहाबाद दिख जा रहा है।

ये एक घर का फोटो दिखाई दे रहा--

बाहर आँगन मे एक जीप ख़डी है।

इस फोटो में एक मंदिर दिखाया जा रहा है।

उस दुकान के बगल में एक और दुकान है जोकि आपका कुरकुरे वगैरा का दुकान है।

घर है जहां पर कुछ महिलाएं योग करते हुए दिख रही है।

बगल में जो कार्टून्स वगैरह रखा हुआ है उसी में मछली वगैरह आते हैं।

यहां पे एक फिसलने वाला दिखाई दे रहा है जिसका कलर आपका येलो और ब्लू कलर का--

दो बच्चा दिखाई दे रहा है एक ने जो ब्लू कलर का कपड़ा पहना है।